यहां पर एक किताब दुकान है।

बहुत सारे बैलून भी लगे हुए हैं पर्दे भी लगे हुए हैं।

इस दुकान में बहुत सारे बेसिन लगे हुए हैं।

एक बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा हुआ है रेड कलर का है।

फोटो टेबल लगा हुआ है और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

कलर का सब फिनिशिंग किया हुआ बगल में एक और दुकान है जिसमें शटर लगा हुआ है।

यहां एक नदी है और नदी में बहोत पानी है।

यहां पर एक रूम है और उसमें बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

एक खिड़की है खिड़की में पर्दा लगा हुआ है।

उसमें बीच में पोल है पोल में लाइट लगी हुई है और लाइट भी कलरफुल है रेड रंग की कलर है।